सामने एक रेड कलर की तस्वीर लगाए लगी हुई दिखाय दे रही है उसके पीछे एक ग्रीन कलर का एक दरवाजा टाईप --

और व एक व्यक्त-दो तिन व्यक्ति चश्मा लगाये हुए है कुछ महलायें है जो की अक्सर साईज करते हुए नजर आ रहे है ऊपर अंडरग्राउंड लाईट लाइट्स दिख रही है।

यहा पे एक बहुत बड़ी फिश जो है वो है टेबुल पे पड़ी हुई है एक अंकल यल्लो कलर की टीशर्ट पहने लाइनिंग वाली देख रहे हैं उसको ओर एक-एक आंटी वीडियो बना रही है फोटो ले रही है सामने से ओटो आ रहा है। ऑटो रिक्शा--

रिक्शा आ रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ब्लू और ग्रीन कलर की टीशर्ट पहने हुए है पीछे भी एक ओटो अपनी कमर पे हाथ रखे हुए --

ऊंचाई पे कुछ लोग खड़े हुए है एक अंकल के हाथ में फाइल है एक आंटी पिंक कलर का ड्रेस पहन हुए खड़ी हुई है एक आंटी धुप से अपने मुह को बचा रही है कोपी से।

कड़ाई चढ़ी हुई है और इसटोप जल रहा है और कोई पकवान जो है एक तसलो में रखा हुवा है सामने एक जाली लगी हुई है ग्रीन कलर की रौशनी की बहार की तरफ --

ओर एक अंकल हेलमेट हाथ में लिए हुये है दिखाय दे रहे है काफी कुछ बेनर लगे हुए दिख रहे है सब एकक दुसरे को देख रहे है।

यहां पे एक व्यक्ति बहुत सारे फ्लवार लिए हुए बेठा है जो की बनियान पहने हुए है और लुंगी पहने हुए हैं यल्लो कलर फ्लवार और परपल कलर रेड कलर ले ओरेंज कलर के बहुत ही खुबसूरत ग्रीन कलर के फ्लवार दिख रहे हैं।

यहां पर एक शॉप पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो की वाईट कलर की शर्ट पहने हुए है ब्लू कलर की पेंट और ब्लू कलर की लुंगी पहने हुए है यल्लो कलर का खम्बा दिख रहा है।

सिर्फ फ्क्लावर टंगे हुए हैं सफ़ेद कलर की पूरी सजावट है सफ़ेद कलर के सभी लोग ड्रेस पहने हुए हैं एक चेयर रखी हूई दिख--

बहुत से व्यक्ति लाईन लगाए हुए हैं खड़े हुए हैं रेड कलर की टीशर्ट एक व्यक्ति ब्लू कलर का बेग टाँगे है ब्लू कलर की टीशर्ट में एक व्यक्ति ब्लेक कलर का बेग टाँगे हुए हैं एक व्यक्ति रेड और ब्लेक --